यहाँ आसमान भी दिखाई दे रहा है।

गाड़ी का कुछ रिपेरिंग हो रहा है। लग रहा है गाडी स्टैंड हो गया है। इसलिए रिपेरिंग हो रहा है। एक बाइक भी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर हीरोहौंडा का है।